यह एक गन्ने का मिल है।

साइड में एक ट्यूबलाइट भी लगी हुई है।

और इसमें बहुत बुफर रखे हुए हैं।

अउर द्वाल पर हृदय का चित्र बना हुआ है।

इस प्लॉट में हरी हरी घास उग रही है।

साइड में दोवाल हुई है दोवाल पर सुफेद कलर का पेंट हुआ है।

और कुछ मरीज भी बैठे हुए हैं।

आदमी खड़े हुए हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

एक कुर्सी भी दिख रही है।

और भी दिख रही है।

और तेल पम्प के पीछे कुछ हरियाली भी दिख रही है।

आउर नीचे ईट बिछी हुई है।

लाइब्रेरी के बाहर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

और दो लाइट लगी हुई है।

बाहर दो मोटरसाइकिलें गड़ी हुई हैं।

और छत पे बहुत लाइट लगी हुई है।

और साइड में एक काले रंग का साइकल भी दिख रहा है।

पपीता रखा हुआ है और साइड में भी--

इन फलों की जूस की मशीन भी रखी हुई है।

और मूर्तियों में सभी भगवान है।

ग्राउंड के पास में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

साइड में लाइट लगी हुई है।

बाहर बहुत से नीले कलर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं।

और काफी पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस प्ले ग्राउंड की पास में बहोत से बैग और शूज रखे हुए हैं।

नीचे काले रंग का फर्श गिरा हुआ है।

और एक ट्रैक्टर में एक साधु जी जा रहे हैं।

पीछे पेड़ भी खड़े हुए हैं और कुछ महिला भी खड़ी हुई हैं।

बहुत रात हो रही है और--

जिसमें कुछ पेंट रखा हुआ है।

और एक इनवर्टर भी रखा हुआ है।

और मेज के ऊपर एक कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

यह एक रोड़ है और रोड पे--

महिला भी दिख रही है और कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं।

और इसमें ग्रिल लगी हुई है जो की स्टील से बनी हुई है।